दो अ पिंक साड़ी पहनी है दो रेड साड़ी पहनी है दो --

इस फोटो में नजर आ रहे हैं कि कहीं होटल का सीन --

जहां एक पेर नजर आ रहा है बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है .

और आगे एक टंकी दिख रहा है।

जहां पे कुछ ईंटा भी रखे हुए हैं .

कुछ लोग दिख रहे हैं और अ एक लड़की खड़ी भी है।

कोई सहर दिख रहा है जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

इस फोटो में आई-फोन का दुकान दिख रहा --

टेबल पर बोतल-वोतल भी रखे हैं .]

इस फोटो में देख देख सकते हैं कि यह बुक का दुकान है जिसके आगे एक आदमी बैठ के मोबाइल चला रहा है और केल--

केले से सजावट हुआ है फूड के मल्ले भी देख रहे हैं।

आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग नजर आ रही--

ऐसा लग रहा है कि कोई होटल का फोटो है जिसमें--

यहां पे सरक दिख रहे हैं सरक के साइड में बहुत सारी गाड़ियां ल दिख रही --

यह फोटो एक कोचिंग की दिखाई दे रही है जहां पे --

और दो मार्कर रखे हुए हैं।